आस पास में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहाँ पर पुरुष दिखाई दे रहें हैं।

यहां पर पार्क दिखाई दे रहा हैं।

कई सारी कुर्सियां दिखाई दे रही हे।

सामने एक पोर्टल रखी हुई दिख रही है।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

यहां पर वॉशिंग मशीन दिखाई दे रही है।

सामने बैनर दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर जिम दिखाई दे रही है।

यहां पर मशीन भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

एक पुरुष दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कई सारे पेपर दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर आसमान दिखाई दे रहा हे ।

बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

कपड़े अलग अलग कलर के दिख रहे हैं।

यहां पर कई सारे कलर दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर गैराज वाला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कपड़े अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे है।

दीवार पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

बाल काले कलर के दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर एच_डी_एफ_सी बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई सारी कुर्सियां दिख रही हैं।

मुझे यहां पर कई सारी महिलाएं दिखाई दे रही है।

टेबल पर समान दिख रहा हे।

मुझे यहां पर कुर्सियां दिखाई दे रही है।

सामने की ओर एक बड़ी सी टेबल दिख रही है।

यहाँ पर कांच भीं दिख रहा हैं।

मुझे यहां पर ट्राली दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर पुरुष दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

जंक्शन पर धार फूड जंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है।